राजनिक भवन हैं इसके सामने में बहुत सारा छोटा -छोटा गमला लगा हुआ हैं बहुत बड़ा- बड़ा खिड़की है इसमे और ऊपर दो तल्ला का बना हुआ है ये भवन प्रशाशनिक भवन--

बस फल और सब्जी बेच रहे है फल में केला है और आम है और सब्जी में पत्ता गोभी करेला टमाटर भिन्डी बैगन लौ --

ये तिवारी जी का भोजनालय हैं इसमें लिखा हैं कि दाल- चावल रोटी पूरी- सब्जी इडली डोसा समोसा बड़ा चाय -कॉफ़ी इत्यादि मिलता--

घर है सामने में इधर गेट के पास एक आदमी बाइक पे खड़ा हुआ है तीन चार ठो बाइक है इधर और एक पेड़ है बहुत बड़ा सा नीम का--